और इनके पीछे काफी बड़ा जंगल सा दिख रहा और इनके बोन बाउंड्री खिची हुई है। ये बो बोगले उनके अंदर बैठे हुए है और ये पानी भार वहाँ उनके चारो बारो तरफ--

यह तस्वीर एक धार्मिक ईस्थल की है।

दो व्यक्ति खड़े हुए हैं जो अपनी गाड़ी पे हैं और एक आटू जा रहा है और बा--

और यहाँ पर अलग अलग तरह के बॉक्स बने हुएं हैं जिनमें किसी बॉक्सों में किताबे रखी हुईं हैं हमें यहाँ पर--

सौंदर्य और यहाँ हमें एक इस तरफ काफी ज्यादा मात्रा में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जो बड़े-बड़े है काफी--

ज्यादा मात्रा में सजावटे है यहाँ पर अलग-अलग रंगो की फुग्गो से भी--

यह तस्वीर मे काफी ज्यादा मात्रा लोग नजर आ रहे है यहाँ पर अगल-अगल तरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ दो पहिया वाहन भी चार पहिया वाहन भी है।

यह तस्वीर हम देख पा रहे है की यहाँ पर रेत गिट्टी और काफी ज्यादा मात्रा में लोहे की किसी इसी घर में काम कर रहा है और यहाँ पर ट्रैक्टर भरे हुए है।

साथ ही यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में कुछ चीज़ो और हमें उस उनके पीछे खूब बड़ा एक शेड नज़र आ रहा है जो कि एक लोहे से बना हुआ है साथ ही हमें आसमान भी नजर आ रहा और यहाँ पर एक खूब बड़ा --